पेड़ है बहोत सारे गाड़ी है रोड है वाइट कलर का बिल्डिंग है।

और ये पेड़ है पेड़ में पत्ता है दो भैस है।

एक वर्कर माटी देख रहा है एक वर्कर इधर कुछ कांच में कर रहा हैं।

पीछे गार्ड है गार्ड में एक ग्री लगा हुआ है आगे गेट में फुल लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है।

कलर लाइट लगा हुआ है लाइट अ की कालीन बिछा हुआ है।